बाहर तीन लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं।

रंग बिरंगे के कुर्सी भी रखे हुए हैं।

बहुत सारे कार्टूंस में कुछ सामान भी है।

जहां पे दो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और एक होल्डिंग भी लगा हुआ है।

ऊपर में करकट लगे हुए हैं और इसका रंग व्हाइट और रेड है।

बगल में कुकर भी रखा हुआ है और ऊपर में दो फैन भी रखे हुए है।

बोतल भी है और पानी गर्म करने के कुछ समान भी हैं।

उसके बाहर एक बोड़ा रखा हुआ है।

वहां पे बहोत सारे लोग हैं और रंग बिरंगे बैलून भी हैं।

वही पे तीन पोस्टर लगे हुए हैं।

पे एक टब रखा हुआ है और उसके बगल से एक वायर गई हुई है।

इन खिड़कियां बगल में और लगे हुए हैं और इसका रंग रेड और पीला है।

एक में मेन रोड दिख रहा है और वहीं पे बगल में एक पेड़ है।

नीचे में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है और एक डस्टबिन भी है।

इसमें बहोत सारे खंभे लगे हुए हैं।

एक एक्वेरियम का दुकान दिख रहा है।

दो कार्टूंस नीचे रखे हुए हैं।

मुझे सारे लोग पटाखे जलाते हुए दिख रहे हैं।

बहोत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं और दो पौधे भी हैं।

उसके ऊपर करकट लगा हुआ है और सामने ब्लू और व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

बहुत सारे टेबल्स लगे हुए हैं।

वहां पे वैसलीन के बहुत सारे डब्बे और बगल में ओरियो के पोस्टर भी है।